और उसके नीचे रोड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ और वहां पे एक काउंटर है जहां पे कुछ चेयर लगाए हुए --

और एक लाइन में कोलड्रिंक रखा हुआ है एक व्यक्ति खड़ा है अपने बाइक के साथ--